साथ ही साथ कुछ बच्चों को भी देखा जा सकता है।

बहोत सारे लोग वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं।

बैठने के जगे साथ ही साथ दो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट भी दिख रहे है।

इस पिक्चर पर हमें दो लोग फैक्ट्री पर काम करते हुए दिख रहा है दिख रहे हैं।

उन्होंने टोपी भी लगाया हुआ है।

बहोत सारे मेटल्स के पिलर भी दिख रहे हैं।

उसके पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग भी दिख रहा है।

घर पर बहोत सारे खिरकी भी दिख रहे है।

पिक्चर पर हमें दो आईना उसके साथ ही साथ दो काले चेयर्स भी दिख रहे है।

इस पिक्चर पर हमें दो बोट दिख रहे हैं।

इस पिक्चर पर हमें एक बहोत बड़ा सा समुद्र दिख रहा है।

इस पिक्चर पर हमें दो बड़े बड़े सफेद का गाड़ी दिख रहे हैं और दो छोटे छोटे काले--

इस पिक्चर पर हमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे घास भी दिख रहे हैं।